यहाँ पर हरा भरा दिखाई दे रहा है साथ में ऊपर भी मस्त गुब्बारा दिखाई दे रहा हैं।

इस चित्र में बहुत बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहा हैं।

और साथ में इसमें छिलने के लिए रोड भी है यहाँ पर बहुत बड़ा हुवा जैसा दिखाई दे रहा हैं।

और ये लोग खुर्सी (कुर्सी) पर बैठे हुए है और साथ में यहाँ पर टेबल भी दिखाई दे रहा है दरवाजे भी है पर चल रहा हैं।

देखने के लिए राजपुरोहित पूजा करने लिए होते होंगे पर यहाँ पर चारों तरफ बहुत सुन्दर फूल जैसा दिखने पर हैं।

समय लगेगा पर उम जहाँ की बहुत सुन्दर है पर इसमें फूल भी दिखाई दे रहा है और साथ में यहाँ पर पेड़-पौधा भी हैं।

जिसमें जिसे बहुत सारे लोग मास्क लगाए हुए नजर आ रहे है उस हाथ में यह दो व्यक्ति पक्षी पकड़े हुए हैं।